पीछे कि तरफ एक और अंकल दिखाई दे रहे है।

और चार छोटी-छोटी लड़कियाॅ रनिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं।